एक तीस रुपया फीस लिखा हुआ दिखाई देता है डब्बा के काउंटर पे और सर्कस का हिडोलना झूलने वाला सामने लगा है सीएफेल भी लगी हुई है लाइटे भी लगी है तार की बाउंड्री भी बनी हुई है।

यहा एक हवाईअड्डा दिखाई दे रहा है एक आदमी टैक्सी को पकड़ के खीच रहा एक पिछे से भी ढील रहा है।

यह एक पानी का झरना दिखाई दे रहा है पानी के बीच में से एक रास्ता भी दिखाई दे रही है ए पानी में एक दरख़्त की छाया भी दिखाई दे रही एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

लाइट के तार बिजली के खंभे से जा रही है ऊपर से बादल भी दिख रहे हैं सफेद नीले कलर के बादल है।

यह एक हेली कोपटर है हेलीकोपटेर के आगे काले कलर के कपड़े पहने एक आदमी बेग टाँगे हाथ मे लिए जा रहा है

कुछ आदमी लोग टैक्सी से आए हुए है बेग उतार के पे पैदल चल रहे है।

और वर्क शॉप के अंदर टाइल्स हरे क्वालिटी की रखी हुई है ये बिल्डिंग मे काम लगा हुआ है लोहे के पाइप भी गड़े हुए है काले कलर की टाइल्स भी लगी हुई है।

और बॉउन्ड्री के पीछे पेड़ भी लगे हुए है पानी की टंकी भी दिखाई दे रहे है कुछ बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैलोगों के आगे एक नारियल के पेड़ भी लगी हुई दिखाई दे रहे है।